बहुत सारा बिल्डिंग है कलर कलर का और हरा सा पेड़ है बहुत सारा।

आसमान है जिसमें बादल पूरा दूध दूध कलर का है और--

मोटर है और छोटा सा--

वह देखो ऊपर में आदमी है। ये बिल्डिंग को बहुत सुंदर से सजाया गया है।

एक पोस्टर है जिसमे चार लड़कियां है बगल -बगल लाइट लगा हुआ है बगल में चार पाँच और पोस्टर लगा हुआ है।